है हमें एक बैंक जैसा दिखाई दे रहा है जिसमे रेड कलर पुटा हुआ। एक स्कूटी खड़ी हुई है।

एक अस्पताल जैसी दिखाई दे रही है। इसमें नीले कलर की टिन लगी हुई है। एक अल्टो खड़ी हुई है।

वर्ग गाजीपुर मंडल गाजीपुर बेटी बचाओ बेटी पढाओ लिखा हुआ है यहाँ पर कलर बोहोत अच्छा लग रहा है यहाँ पर बोहुत सारे पेड़े लगे हुए हैं।